सामने कुछ लोग दिखाई दे रहें हैं यहाँ पे दो व्यक्ति हैं और यहाँ पे कुछ समान वगैरा रखे हुए हैं जो की देखने से लग रहा है की यह कोई कॉफ़ी शॉप है या फिर यहाँ पर चाय मिलती है।

फ्लावर्स वगेरा भी लगे हुए है बलूंस लगे हुए है लाइट्स भी लगे हुए है ए.सी. लगे हुए है।

यहाँ पे बड़े पेड़ भी लगे हुए है सामने से वाइट कलर के दिख रहे है और यहाँ पे नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है।

और उनमे ग्रीन कलर में पट्टी लगी हुई है और वहाँ पे जो घर है उसमें सामने से विंडोज है और उसमें पिंक कलर वाइट कलर पेंट किया--